गाड़ी उडी दिख रहा है गाड़ी में बंधा हुआ डब्बा दिख रहा है इधर कचरा वाला डब्बा है पोस्टर लगा हुआ है बिल्डिंग बन रहा है बर्तन वर्तन है आदमी उदमी लड्डू उड्डू गैंस वेंस --

अंडा वंडा दिख रहा है बड़ा सा तवा दिख रहा है कुर्सी दिख रहा है और इधर पोस्टर लगा हुआ है इधर बिल्डिंग दिख रहा है सेटर वेटर दिख रहा है और सीटा दिख रहा है।